यहाँ पे गड्ढे किये जाने वाले है। जिसमे पिलर खड़ा किया जाने वाला है।

यहां पे बहुत सारे खेत है जिसमें धान लगा उपजाया जा रहा है।

यहाँ पे लोग स्नान करने आते हैं।

और बच्चों के लिए भी बहुत सारी झुलाएं आए हुए है।

यह एक बैंक ऑफ़ बड़ोदा की ए.टी.एम. है।

यहां पर रोज ताजी मछलियां लायी जाती है यहां पर छोटी-बड़ी सब मछलियां मिलती हैं और हमे यहां से मछलियों को खरीदते हैं।

और इसमें एक साथ चार से पाँच आदमी सफर कर सकते हैं। यह हमें बाजारों में देखने को मिलती है।

जिससे नदियों के बहाव को कम किया जा सके।